वो बस यही बात को शो कर रहा है।

ये पन्द्रा अगस्त का मोका है एक --

और सामने ज़मीन पे बोहोत सारे गिरे हुए है पेस ।

वहां क्राउड भरी हे और बाइक खड़ी है।

जहाँ पे प्लेन जो है --

उसपे पूरी तरह से उसको कवर कर दिया गया हे छाप दिया गया है।

पुलिस आई हुई हे पुलिस की बोहोत सारी --

एक जो है उनसे कुछ पूछ ताछ कर रही है।

और ब्लू कलर का जीन्स पहने जो खड़ा है सलून के बाहार।

ये एक स्कूल है